बीच में दो नट लगे हुए है।

हल्के बादल दिखाई दे रहे है ।

कई सारे बड़े पेड़ लगे हुए नज़र आ रहे है ।

दोनों गाय भूसा खाते हुए दिखाई दे रही है ।

ऑटो रिक्शा के साइड मिरर्स भी दिखाई दे रहे हैं।

रोड के किनारे एक आदमी टोकरी लेकर बैठे हुए दिखाई दे रहा है।

जिस पर सफेद रंग के डाइट लिखा हुआ दिख रहा है।